बहुत ही सामान वगरैह - वगैरह और काफी सारे आदमी लगते ले लेने के लिए आते है क्योंकि यहाँ पे --

ये स्कूल बस है और यहाँ पे अभी खड़ा है और यहाँ पर सारा ही स्कूल बस खड़ा है।

पेंटिंग किया हुआ है और यह एंबुलेंस है और देख सकते हैं।